और ऊपर बादल छाए हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं।

दुकानें जिस पर फल --

सारे तरीके के --

साथ ही साथ ऐसा लग रहा है --

तरह-तरह की लाइट्स लगी है।